इस चित्र में खेत दिखाई दे रहा है जिसके सामने से बोरवेल से पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।

सफर करने वाले इस पे चढ़ाई कर रहे हैं।

सामने एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में जलाराम ओपन किचन रेस्टोरेंट का पिक्चर बना हुआ है।

जहां पर कच्ची कच्ची सड़के दिखाई दे रही हैं।

बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

फेमस हर्बल का उद्यान नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक काफी सुंदर दृस दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक बेच्चा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक सुपर मार्केट दिखाई दे रहा हैं।